इस पिक्चर में एक घर दिख रहा है और यहाँ से --

अ व्हाइट कलर का उसपे पैंट है और उसके जस्ट नीचे एक गाड़ी रखी हुई है और ऊपर बहुत रेड कलर का एक पोस्टर लगा हुआ है और ईटों की एक बाउंड्री उठी हुई है।

जो ऊपर से इसमें व्हाइट और सिलेटी कलर में है नीचे सूरज दिख रहा है जो रोशनी दे रहा है कुछ वृक्ष लगे हुए है।

और येल्लो कलर शिवम और म्यूजिक लिखा हुआ है ग्रीन कलर और मलयम पुरम बाजार लिखा हुआ है नीचे मोबाईल नंबर लिखा हुआ है और कुछ बाल --

इस पिक्चर मे एक बोर्ड लगा हुआ है जो उपर से रेड़ कलर और नीचे ग्रेन कलर है और व्हाइट कलर से लिखा हुआ है पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन --

पिक्चर में फिर भी एक पहाड़ सा दिख रहा हैऊपर और उसमे से पानी निकल रहा हैजो व्हाइट कलर का है।

और यहाँ पे कुछ स्लेटी कलर का वृछ दिख रहा है पत्तियाँ हरे कलर में दिख रही हैं यहाँ पर कुछ पर्पल कलर का दिख रहा है।